ट्रेन के आस-पास काफी सारी झाड़ियां दिखाई दे रही है ट्रेन के बगल मे काफी बड़े-बड़े पेड़ है।

यह तस्वीर एक सड़क की है सड़क के गड्ढों में काफी सारा पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

एम्बुलेंस के बगल में एक दो पहिया वाहन और एक चार पहिया वाहन खड़े हुए हैं।

जंगल में काफी बड़े-बड़े पेड़-पौधे हैं।

वाहन मे कुछ खराबी आ जाने के कारण मिस्त्री उसे सुधार रहा है।

यह तस्वीर एक इमारत की है इमारत को भूरे व लाल रंग से रंगा गया है इमारत के आसपास काफी बड़े-बड़े पेड़ मौजूद है।

विद्यालय नर्सरी से लेकर आठवीं तक के बच्चों के लिए है।